और सबसे आगे में यहाँ में है एक ब्लैक कलर का टेबल ।

यहां पे और बहुत सारा तरह तरह का चेयर है।

और ये व्यू बहुत ग्रीन है।

मुझे लगता है ये अंडरगारमेंट है जो कि हमें यह पिक्चर में दिखाई दे रहा है।

जो कि टीना से बनाया हुआ है।

यहां पे एक गमला है।

वहां पे ब्लैक कलर का दरवाजा है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक सुंदर सा व्यू ।

और ये पिक्चर जू का है।

उसके सामने में बॉक्स बॉक्स में खाना रखा हुआ है।

बस हिरन है और कोई जानवर नही है यहां पे।

जो कि से असेंबली ले रहा है।

दिखाई दे रहा है फ्लैग ।

यहां पर कुछ पौधे लगा के अभी जो बड़ा नहीं हुआ है अभी तक।

और उसके बगल मे ऑटो है।

और ये बहुत लंबा है।

वॉल जो सारा व्हाइट है।

वहां पे एक गाड़ी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे एक पेड़ है जो की इसका नीचे में मजा से सजा के रखा है।

इस पिक्चर में है एक ट्रेन ।

और वहां पे व्हाइट से कुछ लिखा है।

इस पिक्चर मे कुछ स्टूडेंट है।

एक तो यूनिफार्म में है व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है।

इसे थोड़ा आगे जाके वहां पे छोटा छोटा टेंट बनाके बैठा हुए हैं।

सामने में एक फ्लैग है।

पिक्चर में बहोत बड़ा शहर है।

और यहां पे चश्मा जो कि ब्लैक और व्हाइट में है।

उसके साइड में भी और एक ब्लैक कलर है।

मेंन गेट बंध है और साइड का खुला है।

इनमे खाने का चीज़ और वहां पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

और वाइट कलर का पैंट ।

पिक्चर में एक केक है।

और ये ग्राउंड बहुत दूर तक फैला हुआ है।

ट्रक से है और दूर में दिखाई दे रहा है ढेर सारा ट्रक ।

घास चर रहा है इ लोग--

उसका बीच से देखो तो एक घर है वहां पे।

इसमें दिखाई दे रहा है एक बोट ।

वो क्लॉक और पंखा के बीच में एक डंबल उठा के दिख रहा है।

यहां पे एक सीमेंट है।

यहाँ पे वायर जागे है वहा पे पोर्ट है मटका--

इस पिक्चर में है कुछ लोग तो यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं।

पे बारिश जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

और उसका बगल में कुत्ता है।

कभी से देखे तो एक टोपी पहना हुआ है पेर है वहां पे--

कुछ लोग भी है यहां पे अंदर में।